व्हाइट कलर की एक आदमी खड़ा है जिन्हें टी शर्ट पहन पहेन रखी है इसमें--

पत्थर लगे हुए है अलग अलग डिजाइन के सरकारी वाले ये लगा सरकार ने ये रोड बनाया गया है।

बाहर खिड़की के अंदर कुछ वाइट वाइट सा लगा हुआ है इसमे नीचे कुछ आदमी खड़े हुए बस लेने के लिए शायद वेट कर रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग मुझे दिखनल दिखाई दे रहे हैं एक अंकल हैं जिन्होंने गुलाबी कलर का बैग ले रखा है।